ये एक बड़ा सा गोल मेहराब बना हुआ है जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं।

जहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग और रिचार्ज किया जाता है।

ये एक बड़ा सा ओम ओटो होंडा है।

और खाने-पीने की कैंटीन भी बनी हुई हैं।

बाहर की तरफ छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

बाहर की तरफ एक मैदान पड़ा हुआ है।

झूमर दीवार पर लगा हुआ है।

ये एक छत की फोटो है।

टेबलें और कुर्सियाँ लगी हुई हैं।

ऊपर गेंदों के माला लगी हैं।

जहाँ पर फोर व्हीलर गाड़ियाँ --

सामने से कुछ व्यक्ति आ रहे हैं।

जो कि लाल कलर के बैलूंस हैं।

इस पिक्चर में एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में--

जहाँ पर छोटे और बड़े पौधे रखे हुए हैं।

सामने की तरफ बड़ी कुर्सियाँ--